कोई अंदर दुकान के जहां पे सी_सी_टी_वी कैमरे लगे हुए हैं।

पीले रंग की फूल चढ़ाई गई--

यह एक दुकान है जहां लड़कियों की स्वेटर रखी गई है।

दो कुर्सियां रखी हुई है एक टेबल है।

यह कोई गार्डन जैसा लग रहा है।

या तो ये पार्क भी हो सकता है।

पीछे ए_टी_एम है यहां कुछ लोग ए_टी_एम से पैसे निकालने के लिए खड़े हैं।

यहां अंदर खाना बन रहा है।

यहां कुछ लड़कियां दिख रही हैं जो कुछ पेपर से ड्राइंग कर रहे हैं।

यह किसी स्कूल का दृश्य है।

यह स्कूल पीले रंग की है।

यहां पे लाइटें कुछ लाइटें लगी हुई है।

यहां कुछ बच्चे देश की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।

यहां बहुत हरियाली है बहुत शांत वातावरण लग रही है यहां एक बाइक खड़ी है।

घर की सजावट बहोत सुंदर लग रही है।

पानी में स्विमिंग सीखने आते हैं।

यहां की सजावट बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है।

शायद कपड़े की दुकान है।

स्पीकर लगा हुआ है जिसमे से आवाज सुनाई देती--

एक गांव जैसा नजारा लग रहा है।

यहां एक कुआं एक तालाब बगल में एक मंदिर एक दो घर हैं।

यह एक खुली आसमान की चित्र है।